यंह फोटो किसी पब्लिक प्लेस का लग रहा है इसमें बहुत सारी औरत व आदमी दिखे रहे हैं।

यह फोटो किसी कॉलेज के बाहर का लगता है जिसमें बहुत सारी मोटरसाइकिल और स्कूटी भी दिखाई दे रही हैं।

इसमें कुछ अंडरवेयर भी धरे हुए हैं।

इस फोटो में फिसलन पट्टी दिख रही है और एक लड़का और लड़की दिख रही है और लड़के के चेहरे को ब्लर किया हुआ है और इस ग्राउंड में मट्टी दिख रही है।

और इसमें हल्का सा आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और एक साइकिल भी दिखाई दे रही है और इसमें खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।

और बॉक्स में फुटबॉल भी रखी हुई है और कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं एक बॉक्स में पीला रंग हो रहा है एक बॉक्स में काला रंग हो रहा है एक बॉक्स में लाल रंग हो रहा है।

इस फोटो में दो औरत मच्छी बेक रही है और उनके चेहरे को ब्लर किया हुआ है और एक आदमी मच्छी खरीद रहा है जिसने चश्मा लगा रखा है।

और दोनों में लाल लाइट बली हुई है और उसके ऊपर एक लगी हुई है।

और एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पर सरिया छपा हुआ है।

और एक लकड़ी भी दिखाई दे रही है इसके बाल दिख रहे हैं।

इसमें लाइटिंग भी दिख रही है और इसमें कुछ झल्लर भी टंगी हुई हैं।

इसमें कुछ पर्दे भी दिख रहे हैं और एक घड़ी भी दिख रही है और एक बुफर भी दिख रहा है।

इस फोटो में बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।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

कुर्सियों पर सफेद रंग की चद्दर चढ़ी हुई है।

और इसमें लटे भी दिखाई दे रही है और ग्राउंड में हल्की हल्की घास भी हो रही है।

यह फोटो किसी शादी या फंक्शन का लग रहा है।

जेमा कुछ बच्चे बैठे हुए है और उनके चेहरे को ब्लर किया हुआ है।

और इसमें पीछे मकान भी दिखाई दे रहे हैं और उसके ऊपर लड़ी भी लगी हुई है।

इसका रंग हरा है और पर सफेद रंग हो रहा है।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

और एक कसोरे भी रखे हुए हैं और लाल पर्दे भी लगे हुए हैं।

यह फोटो किसी ए टी एम का लग रहा है और इसके बाद एक पोस्टर भी लगा हुआ है और उस पर कुछ लिखा हुआ है और भीतर कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं।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

इस फोटो में एक डिश नजर आ रही है।

और कुछ गमले भी दिख रहे हैं और मकान भी दिख रहे हैं और पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं और एक कार भी दिखाई दे रही है।